इस फोटो में एक सैलून को दिखाया गया है जिसमें की एक पर्दा लगा हुआ है।

यह फोटो एक होटल का है जिसका नाम होटल गेट वे कर्नाटक है।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

इस फोटो में एक इमारत दिखाई गई है जिसका कलर नीला और सफेद है।

इसके बाहर चार टेंपो खड़े हुए हैं जो कि थ्री व्हीलर हैं।

टेबल के ऊपर बैग और आदमी सामान रखे हुए हैं।

यह फोटो एक स्टेशनरी की है जिसके अंदर कई बुक्स और स्टेशनरी के सामान पड़े हुए हैं।

ऊपर काले और नीले बादल भी दिखाए गए हैं।

और उसके पास ही एक नीले कलर का थेला भी लगा हुआ है जिसमें कि किरणा का सामान और सब्जियां लटकी हुई हैं।

इसमें एक बैंक को दिखाया गया है जिसका नाम एच_डी_एफ_सी बैंक है।

एक गाड़ी ने पेड़ को ऊपर लटका रखा है।

पास ही में सफेद कलर की दीवार पर एक पेंटिंग भी बनी हुई है।

यह फोटो एक मैदान का है जिसमें हरी घास उग रही है।